और यहाँ पे एक बुजुर्ग आदमी हैं जो जा रहे हैं साइड में।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

और यहाँ पे रेलिंग को पकड़ के एक आदमी खड़े हैं वो आदमी यहाँ पे है।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

यहां पे एक जेंस दिखाई दे रहे हैं जो क --

यहां पे दीवाल जो दिख रहा है व्हाइट कलर से पेंटिंग किया हुआ है दीवाल पे एक --

और आसमान भी यहाँ बहोत अच्छा --

यहाँ सामने में एक टेबल रखा हुआ है टेबल पर एक जेंट्स है जो प्रेस कर रहे है प्रेस मशीन से।

लेडीस और जेंट्स दोनों है।